इस चित्र में स्कूल की तस्वीर हैं जहाँ पे स्कूल के ग्राउंड में एक टेबल डाला गया हैं और चेयर्स डाले गए हैं पीछे--

बिल्डिंग के उपर एक लाल रंग का झंडा लगाया गया है उपर की तरफ खुला आसमान है आसमान का रंग जो है काला।

जहाँ पे बहुत सारी बुक्स और चीजे रखी गई है एक नीले रंग कि स्टूल है एक सफेद रंग का टेबल है उपर कि तरफ दो लाइटिंग जल रही है नीचे जमीन का रंग जो है लाल है।

इस चित्र में एक रास्ते कि तस्वीर है रास्ते पर जो है बहुत सारी झाडिया है एक मोर खड़ी हुई है।